उस बोर्ड मे एक पेन बना हुआ है जो ब्लू कलर है नीचे देखेंगे तो बीच मे कैलेंडर टंगा हुआ है लेफ्ट एंड राईट मे वाइट कलर की अलमारी बनी है जिसे काफी सारी किताबे जमी है और अन्दर अँधेरा है और लेफ्ट और वाइट कलर से पेंट हुआ है।

ये एक रूम है जहाँ पे लाईट क्रीम कलर का पेंट हुआ है और वाइट और रेड कलर के बैलून चिपके हुए हैं दीवार मे फोटो लगा हुआ है।

ये एक पार्क है जहाँ पे देखेंगे तो एक टेबल रखी है। उसके बाजु से एक हरे कलर का डस्ट्बिन रखा है और पीछे लंबे लंबे पेड़ निकले है।

इसमे ठेला खड़ा हैं जिसमे नीला कलर हैं उसमे भी काफी लाल-लाल सेब रखे हुए हैं लेफ्ट और देखेंगे तो केला रखा हेगा--